और नीचे में बहुत सारा पेपर्स का टुकड़ा भी है।

यहां पे बैनर भी लगाया है।

उधर सब भी है रस्ते भी है।

और यहां पे वाटर भी रखा हुआ है।

ये बहुत सारा पब्लिक भी है।

गेट का सामने में एक पोस्टर भी लगाया हुआ है।

यहां पे फूल को तोड़ रहा है।

एक कैफ़े हैं जहां पे लोग बैठ के मजे ले रहे हैं कैफे का।

ये रिसेप्शन में एक लड़का बैठा हुआ है।

यहां पे नोटिस बोर्ड भी लगाया हुआ है।

ये बहुत बड़ा सा एक हॉस्टल लग रहा है।

यहां पे बहुत सारा पेड़ है।

यहां पे स्ट्रीट लाइट भी लगाया हुआ है।

स्विमिंग पूल भी दिख रही हैं।

ये एक गेम जॉन है।